इस ट्यूटोरियल में हम निम्न विषय सीखेंगे इंडेक्सेस टेबल फ़िल्टर और एसक्यूएल कमांड विंडो पहले इंडेक्सेस के बारे में सीखते हैं
इंडेक्स क्या है
इंडेक्स डेटाबेस टेबल में रेकॉर्ड्स को खोजने और क्रमबद्ध करने के लिए एक तेज़ तरीका है
हम टेबल में एक फील्ड या कई फील्ड्स को चुन सकते हैं जिसमें रेकॉर्ड्स के क्रमबद्ध की आवश्यकता है
इंडेक्स चुनित फील्ड या फील्ड्स पर आधारित रेकॉर्ड्स के लोकेशन स्थान को संचित करता है
अतः डेटा पाने के लिए बेस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा डेटा के लोकेशन पर जा सकता है
अतः डेटा खोजने के लिए सारे रेकॉर्ड्स के स्कैनिंग की अपेक्षा यह काफी तेज़ है
टेबल की प्राइमरी की स्वतः ही इंडेक्स्ड क्रमबद्ध हो जाती है
अब अपने उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस में एक इंडेक्स बनाते हैं
हम बुक्स टेबल में टाइटल कॉलम पर एक इंडेक्स बनाएँगे जो बुक टाइटल्स पर खोज को बढ़ाएगा
पहले अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं यदि पहले से नहीं खुला है
और एडिट मोड में बुक्स टेबल को खोलें
टेबल डिजाइन विंडो में टूल्स मेन्यू पर जाएँ और इंडेक्स डिजाइन चुनें
इंडेक्सेस विंडो में ध्यान दें कि बेस ने पहले से ही प्राइमरी की को यूनिक इंडेक्स के रूप में ले लिया है
अपनी इंडेक्स बनाने के लिए सबसे बायीं तरफ के आइकन न्यू इंडेक्स पर क्लिक करें
और दायीं तरफ इंडेक्स फील्ड में ड्रॉप डाउन सूची में टाइटल चुनें
हम यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम भी चुन सकते हैं
और बायीं ओर पर तीसरे आइकन पर क्लिक करके इस इंडेक्स को फिर से IDX Title नाम दें और इसके बगल में सेव आइकन का इस्तेमाल करके इसे सेव करें
अतः यहाँ टाइटल फील्ड पर हमारा इंडेक्स है
इस प्रकार से हम बेस का उपयोग करके टेबल्स के लिए इन्डेक्सेस को बना बदल फिर से नाम देना या मिटा सकते हैं
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है मेंबीयर्स टेबल में नेम्स पर एक इंडेक्स बनाइए और इसको IDX MemberName नाम दें
आगे देखते हैं कि टेबल फ़िल्टर क्या है
टेबल फिल्टर फीचर हमें अन्य एप्लीकेशन से टेबल्स को बेस डेटाबेस में छुपाने की अनुमति देता है
उदाहरण के लिए लाइब्रेरी डेटाबेस में बुक्स टेबल को छोड़कर सभी टेबल्स को छुपा देते हैं
अब टेबल फिल्टर टेबल फिल्टर टूल्स मेन्यू में उपलब्ध है
यहाँ अल्ल व्यूज को चेक करें और बुक्स टेबल को चेक करें
मतलब हम केवल बुक्स टेबल को अन्य एप्लीकेशन्स को दर्शाने के लिए बना रहे हैं
अब ओक बटन पर क्लिक करें
फिर व्यू मेन्यू पर क्लिक करें और फिर रिफ्रेश टेबल्स पर
ध्यान दें कि केवल बुक्स टेबल यहाँ दिख रही है
साथ ही जब इस डेटाबेस को लिबरऑफिस राइटर या कैल्क से एक्सेस करते हैं हम वहाँ केवल बुक्स टेबल देखते हैं
यहाँ एक और नियत कार्य है 1
लिबरऑफिस राइटर खोलें लाइब्रेरी डेटाबेस को एक्सेस करें और वहाँ पर मौजूद टेबल्स को जाँचें
बेस में सभी टेबल्स को फिर से दर्शाइए
और टेबल्स की मौजूदगी को पुनः चेक करने के लिए लिबरऑफिस राइटर को फिर से खोलें
अंतत एसक्यूएल कमांड विंडो के बारे में सीखते हैं
एसक्यूएल कमांड विंडो को टूल्स मेन्यू से एसक्यूएल चुनकर एक्सेस कर सकते हैं
हम डेटाबेस को एसक्यूएल स्टेटमेंट्स देने के लिए इस विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं
अब हम एसक्यूएल क्वेरीस को निष्पादित करने के लिए क्वेरीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किन्तु यहाँ हम डेटाबेस से केवल डेटा पूछने तक सीमित हैं
मतलब यहाँ हम केवल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स जारी कर सकते हैं
किन्तु हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स निष्पादित नहीं कर सकते जो यहाँ डेटा और टेबल की संरचना को बदलते या नये टेबल्स बनाते हैं
और एसक्यूएल कमांड विंडो हमें इस तरह के डेटा मैनिप्युलेशन और डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स या लैंग्वेज का इस्तेमाल करने में मदद करता है
डेटा मेनिप्युलेशन लैंग्वेज या केवल डीएमएल के उदाहरण हैं इंसर्ट अपडेट और डिलीट डेटा
और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या केवल डीडीएल के कुछ उदाहरण हैं क्रिएट टेबल ड्रॉप टेबल और अल्टर स्टेटमेंट्स
हम पहले डीएमएल उदाहरण देखेंगे
बेस विंडो में टूल्स मेन्यू से एसक्यूएल कमांड विंडो खोलें
कमांड टो एक्जीक्यूट टेक्स्ट क्षेत्र में टाइप करके बुक्स टेबल में नया रिकॉर्ड जोड़ें इंसर्ट इंटो बुक्स टाइटल ऑथर पब्लिश्यर पब्लिशर प्राइस वैल्यूज थे हॉबिट jrर टोल्किएन 2002 आक्सफोर्ड 500 एक्जीक्यूट बटन पर क्लिक करने से पहले कमांड को अब ध्यान से देखें
इंसर्ट स्टेटमेंट टेबल का नाम और फील्ड नाम और फिर वैल्यूस को सूचीबद्ध करता है जिनको नये रिकॉर्ड में जाने की आवश्यकता है
ध्यान दें कि टेबल का नाम और फील्ड के नाम दोहरे उद्धरण चिह्नों में बंद हैं
हम जानते हैं कि बेस केस सेंसिटिव होता है और दोहरे उद्धरण चिह्न सुनिश्चित करते हैं कि बेस नामों को स्वीकारे जैसे हमने बनाया था
यदि हम उद्धरण चिह्न इस्तेमाल न करें बेस स्वतः ही सारे नामों को बड़े अक्षरों में बदल देगा
हमें डेटा टाइप टेक्स्ट की वैल्युस को एकल उद्धरण चिह्नों में रखना होगी
न्यूमेरिक फील्ड्स को किसी भी उद्धरण चिह्नों में रखने की आवश्यकता नहीं होती
साथ ही हमें बुकिड फील्ड सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है जोकि एक ऑटोनंबर फील्ड है
नम्बर को खुद से बनाने की ज़िम्मेदारी बेस लेगा
अतः चलिए एसक्यूएल का निष्पादन करें
सूचना कमांड सक्सेसफुली एक्जिक्यूटेड पर ध्यान दें
यदि यहाँ हमारे लिखे गये एसक्यूएल में कोई एरर्स होती हैं तो बेस उन्हें इंगित करेगा
बुक्स टेबल पर डबल क्लिक करें और नये रिकॉर्ड को देखें जिसे अभी जोड़ा है
यह अंतिम रो में जुड़ गया है
आगे एक डीडीएल उदाहरण देखते हैं
हम फील्ड्स ऑथोरिड ऑथर और कंट्री के साथ ऑथर्स नामक नया टेबल बनाएँगे
एसक्यूएल कमांड विंडो में जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा टाइप करें
और इसे निष्पादित करें
टेबल्स सूची पर वापस जाएँ और व्यू मेन्यू से टेबल्स को रिफ्रेश करें
यहाँ नया ऑथर्स टेबल है जिसे हमने अभी बनाया है
डीएमएल के बारे में अधिक जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर जाएँ
डीडीएल के बारे में अधिक जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही विकिपीडिया वेबसाइट पर जाएँ
यहाँ आपके लिए एक और नियत कार्य है 1
बुकिड के साथ बुक कीमत 3 से आरएस
300 तक निर्धारित करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें
थे हॉबिट शीर्षक नामक बुक को डिलीट करें
ऑथर्स टेबल में नया रिकॉर्ड लेखक का नाम jrर
टोल्किएन और देश इंग्लैंड जोड़ें
ड्रॉप स्टेटमेंट इस्तेमाल करके डेटाबेस से ऑथर्स टेबल को ड्रॉप करें
इसी के साथ हम लिबरऑफिस बेस के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद